जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है यह किसी नदी का चित्र है जिसमें किसी नदी पर डैम बनाया जा रहा है। जिसको बनाने के लिए कुछ इंजीनियर और कुछ लेबर काम में लगे हुए हैं।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है इस चित्र के देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है द जावेद हबीब सैलून किसी सैलून का ओपनिंग हो रहा है जिसके ओपनिंग के लिए कुछ गुब्बारे लगे हुए है और उसके साइड में एक कैमरा भी लगा हुआ है।